यहाँ पर हमे एक होटल के अन्दर का रूम दिख रहा है जहाँ पर सामने एक टेबल रखी हुई है यहाँ पर काफी सारी लाइटें लगी हुई हैं।

सामने एक एक्टिवा से अंकल जाते हुए भी दिख रहे है सामने ही एक मोटर बाइक से कुछ पुरुष भी जाते हुए दिख रहे है उनके आगे एक बच्ची भी जा रही--

यहाँ पर हमेक एक मिठाई की इस दुकान दिख रही है जिसमे काफी वैरायटी की तरह तरह की अच्छी मिठाईया भी रखी हुई है यहाँ पर खड़े कुछ पुरुष भी दिख रहे हैं जो--

यहाँ पर हमे एक पहाड़ टाइप कुछ दिख रहा है जहाँ पर काफी सारे पेड़ लगे हुए है व छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए है।

--नर भी दिख रहा है ऊपर लगा एक पंखा और दो लाइटे भी दिख रही है सामने ही हमे एक बोर्ड भी दिख रहा है यहाँ पर टेबल पर रखे काफी सारे कपड़े भी दिख रहे है।